पास में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है ऊपर एक टीन सेट पड़ा हुआ है।

जो जल रही है मस्जिद के बाहर लोहे का चैनल लगा हुआ है।

मकान के ब अंदर एक रेलिंग बनी हुई है जो लोहे की है।

दुकान के पास एक फोल्डिंग पड़ी हुई है जिसपे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

फोटो हैगी है जिसके पास में एक क्रिश्चियन का मार्क बना हुआ है।